सामने देखिए ये नदी किनारा है।

ब्लू कलर की बाउंड्री हो रही है।

यहां पर बहुत सारे डस्टबिन रखे हुए हैं।

और यहां पर बहुत सारे मैन भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सामने देखिए हमें एक मकान दिखाई दे रहा है जो कि पीले और सफेद कलर का है।

और दीवार पर गोल्डेन कलर की डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।

राइट साइड दो चेयर भी रखी हुई है।

सामने कैंची भी रखी हुई है।

लेफ्ट साइड एक लेडिस भी दिखाई दे रही है सब ने मास्क लगाए हुए कलरफुल --

लाल और सफेद कलर के बहुत सारे बैलून लगे हुए--

बहुत सारी गाइड मॉडल पेपर दिखाई दे रहे हैं।

सफेद कलर की छत है छत में लाइट भी दिखाई दे रही हैं।